मेन रोड का साइड है एक बाइक चल रही है पीछे।

उप्पर से आसमान दिख रहा है।

सामने भी लेटने की जगह बनी हुई है पानी की जगह बहुत बड़ी बनी हुई है नहाने की एक आदमी इसमें नहा भी रहा है किनारे पे खड़ा हुआ है ये देखिए--